अ बहुत बड़ा मकान है इस मकान को देख सकते हैं बहुत मस्त लग रहा है बड़ा।

पहाड़ पर्वत ऊँचा-नीचा बहुत सारा आसमान नीला कलर का है । पहाड़ पर्वत भी दिख रहा है। बहुत मस्त लग रहा है ।

यहाँ पे देख रहे है की --

दिया जलाने वाला छोटा-सा दिया है और भगवान जी का मूर्ति भी है और इसके पाछे ये एक पीपल का बोहोत बड़ा विशाल पेड़ भी है।